लोटे रखे हुए है यहाँ पर तीन स्टूल रखे हुए है एक फ्रीजर रखा हुआ है यहाँ बहुत बड़ा जिसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल रखी हुई है स्प्राइट की और कोका-कोला --

दुकान बनी हुई है दुकान का कलर व्हाइट कलर है यहाँ पर बहुत ऐ कबर्ड बने हुए है जो कबर्ड का पिंक कलर है यहाँ पर बहुत सारे बिस्किट रखे हुए है और एक सॉस की बॉटल रखी हुई है चौकोस रखा हुआ हैं।